चित्र में मुझे पीछे लाइटिंग और गुब्बारे दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे घर के अंदर लगा हुआ पेड़ दिख रहा है।

लाल सफेद दिख रहा है चित्र में मुझे ऊपर से जलती हुई लाइट दिख रही हैं।

चित्र में सोफे की डिजाइन बनी हुई दिख रही है।

चित्र में गाय खूंटे से बंधी हुई दिख रही है।